यह बहोत अच्छा से सजाया गया है।

यह एक पार्किंग है इस पार्किंग में बहुत सारा पेड़ पौधे लगाए हुआ है।

इस पार्किंग में बहोत सारा हरा भरा पेड़ पौधे लगाया गया है।

यह एक बाजार का दृश्य है।

इस दुकान में लाइट लगी हुई है।

यहां पर कुछ आदमी लोग बैठे हुए हैं जो टोपी पहने हैं।

इस जंगल में बहुत सारा पहाड़ी दिखाई दे रहा है।

और काउंटर के पास आदमी बैठा हुआ है।

टेबल के बगल में बहुत सारा कुर्सियां भी हैं।